ये लग रहा है कि एक बाइक स्टोर है जहां पर बाइक की सीट बनाई जाती है।

सामने एक पेड़ है बहोत सारे पेड़ हैं।

एक औरत अंदर की तरफ जा रही है।

ग्राउंड के अंदर जाने का रास्ता भी है।

जहां पर सामने व्हाइट कलर की ग्रीन कलर की एक टेम्पो खड़ी हुई है व्हाइट कलर का कार भी है।

सामने एक आदमी है जो यलो कलर का टी शर्ट पहना हुआ है टोपी लगाया है।

पोस्टर है फोटोस है और छोटी छोटी लाइटों के डिजाइन हैं।

सामने नदी गई हुई है।

दूसरा सोफे पे बैठा हुआ है।